ए दो स्टील के पिलर भी लगे हुए हैं जीसमें एक लाल कलर की रिबन बंधी हुई है।

व एक साइड ए.सी. विंडो ए.सी. लगा हुआ है।

चित्र में एक बजार का सीन दृश्य दिखाया गया है जिसमे एक टिक्की वाले की दुकान दिखाई दे ररी है।

ऑटो रिक्शा खड़ी है व एक नीले कलर की गाड़ी भी आगे खड़ी है।

चितर में एक पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स की चित्र दिखाया गया है।

चित्र में एक बिल्डिंग का चित्र दिखाई दे रहा है जिसपे एक बिल्डिंग पे ग्रेनाइट किया हुआ है।